नीचे चटाई बिछी हुई है बल्कि घांस है इतने सारे वायर बांस पे लाइट लगे हुवे है नाल में इतने सारे लोग है।

इस फोटो में एक पुरानी गाड़ी है जो रेड कलर का है डिग्गी खुली हुई है पीछे कलर की।

खंबे में एक लाइट है एक खंबा वैसे ही खड़ा है ब्लू रंग में।

फोटो में सामने इतने सारे फूल लगे हुए हैं जो येलो कलर में है।

और फिर फूल लगे हुए है फूल के पौधे मिट्टी के बर्तन में है।

एक लड़के ने व्हाइट टी शर्ट ब्लैक पैंट और हाथ में घड़ी पहने हुए हैं।

पथ में पांच लाइटस लगाए हुए हैं और इतने सारे लाइटस हैं दीवार पर--

छत की कलर व्हाइट है चार पिलर दिखाई पड़ रहे हैं सामने।

टाइल्स के रखे हुए हैं टुकड़ा बड़े बड़े एक व्हाइट और ब्राउन कलर में है टेबल पर बैग है बोतल है।

व्हाइट रंग की चारों तरफ दीवार है जमीन की कलर हल्का यलो में है उसके एल_ई_डी लाइट लगी हुई है लाइट का वायर दिखाई दे रहा है।

स्टेट बैंक का लोगों लगा हुआ है दो शटर का कलर ब्राऊन है और एक कलर का व्हाइट दो ए_सी का मशीन लगा हुआ हैं।

ग्रीन रंग में एक छोटा सा घर है ब्राउन कलर में खंभा --

आगे येलो कलर का घर है रोड की कलर पिंक और येलो कलर में है।

जी और बच्चे ने सभी एक ही रंग का ड्रेस पहनी है व्हाइट रंग का।

छत पर लाइट लगी हुई है एक बिजली का खंबा है।